अ मोटे मोटे पेड़ भी है बहोत सारे--

और उनकी जड़ों में पेंट भी किया है।

और काउंटर पर दो तराजू भी है।

और पीछे में एक ईंटे का घर दिख रहा है।

और उधर साइड एक दीवाल भी गिरा हुआ है।

तो इस फोटो में हमें एक दवाई के क्लीनिक की फोटो दिख रही है।

और उसके ऊपर में आदमी बैठा हुआ है जो कि पन्नी को सही कर रहा है।

और पीछे कुछ कपड़े वाले घर भी हैं।

और दिवाल के इधर साइड में बहोत सारी मोटरसाइकिले भी लगी हुई हैं।